सॉरी दवाइयों की दुकान का फोटो है।

यहां पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता हैं।

यह फोटो एक घर का दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक प्रक्रति का दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक नदी का है।

किसी ने यहां पर फोटो खींचा है।

इसके पैर बहोत लंबे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर आपका मनचाहा जोभी लिखा था--

ऐसे घर मुझे बहोत पसंद हैं।

यह एक दुकान का फोटो हैं।